यहां पर रास्ता हैं रास्ते के दोनों साइड खम्बे लगे हुए हैं

यह यह एक ऑफिस है जिसके आगे टेबल रखी हुई है उसपे कुछ लै लैपटॉप रखे हुए है।

और यह मन्दिर ऑरेंज कलर का है इसके अंदर कुछ मूर्तियां रखी हुई है और साइड में भी ये और दोनों साइडों में भी मूर्ति रखी हुई है और पीछे काफी पेड़ लगे हुए है बहुत सारे।